ये एक हॉस्पिटल की पिक है जिसमें एक टेबल पर मुजस्समा रखा हुआ है और उसको डिफरेंट कलर के हार पहनाए गए हैं।

टाइल लगी हुई है फर्श पर डिफरेंट टाइप टाइप की टाइल लगाई ले कुछ ब्लैक कलर है कुछ व्हाइट कलर है और --

वैगनार खड़ी है इसमें एक बी.एम.डब्लू. खड़ी है और इनके --

जो चीजें बाय कर रहे हैं और एक पर्सन सेलर चीज परचेस कर रहे हैं और इनके पास एक पैकेट पड़ा हुआ है जिसमें--

दो फ्लैग लगे हुए है।

खड़े होकर के पिक्स बनवा रहे है उनके हाथ में बैनर्स लगे हुए है कुछ लोग।

ये एक रिवर की पिक है जिसके बहुत सारे हुए है।

मेज पड़ी हुई है जिसके ऊपर डिफरेंट चीजें पड़ी हुई हैं और चेयर्स रखी हुई हैं और नीचे क्लीन बिछा हुआ है।

इसमें आयरन की जाली लगी हुई है कुछ विंडोज लगी हुई हैं और ग्लासेस विंडोज लगी हुई हैं और ये खंबा लगा हुआ है।

में मुक्तलिफ गर्ल्स ने रशे लगाया हुआ है कुछ ने डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हुए हैं कुछ ने हैंड में बच्चों को उठाया हुआ है और ये --

और कुछ लोग इधर उधर एक दूसरे से गप शप कर रहे है।